जहाँ पर बहोत सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर आसपास सभी पेड़-पौधे यहाँ पर आसमान नीला है यहाँ की जो फर्श है वो भूरे रंग की है।

जैसा की मई देख पा रही हूँ यहाँ पर बसे खड़ी हुई है सफ़ेद रंग की आगे फर्श और भूरे रंग की बिल्डिंग सफ़ेद रंग की--

खम्बे लगे है सफ़ेद रंग के यहाँ ये जो बसेस रुकी है सफ़ेद रंग की है।

जैसे की मै देख पा रही हूँ एक मस्जिद है जो कि सफ़ेद रंग की है यहाँ पर हरे रंग की--

ये झंडे लगे है यहाँ पर आस - पास हरे रंग के पेड़ पौधे है यहाँ पर भू भूरे रंग की --

खिड़किया भी है यहाँ पर आसमान का रंग सफ़ेद धरती का रंग भूरा है।

जैसा की मे देख आ रही हूँ यहाँ एक काली गाय खड़ी है यहाँ पर यहाँ पर दो लोग खड़े है एक लोग ने--

यहाँ की जो दीवार है वो सफ़ेद रंग है यहाँ पर ह ईंटो की दिवार यहाँ की फर्स भूरी है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये एक नाइ की दुकान है जहाँ पर जो दिवार सफ़ेद रंग की यहाँ पर --

कई सारे लोग बैठे है यहाँ पर जो अलमारी है शीशे की अलमारी है वो लाल रंग की शीशा सफ़ेद रंग का यहाँ पर आस - पास --

यहाँ पर सफ़ेद रंग की रेलिंग है यहाँ पर एक लोग नीली कलर की शर्ट पैंट रखी यहाँ है कढ़ाई है जो कि काले रंग की है।

यहाँ पर अ कुछ हरी घासे लगी हुई है भूरी मिट्टिया है यहाँ पे ईटे है जो की भुरे रंग है।

जो ये काले फूलों के पहिये है आके फर्श हुए आस पास यहाँ की जो दिवार सफ़ेद रंग की है यहाँ के--

यहाँ एक आदमी खड़ा है जो की गाड़ी धो रहा है।